यहाँ पे ऑटो रिक्शा हैं | ऑटो रिक्शा जो हैं खड़े हुए हैं कुछ जा रहे हैं |

यहाँ पे एक गेट दिखाई दे रहा है जो काले कलर का है और लोहे का बना हुआ है ।

एक आदमी वीडियो बना रहा है और मोबाइल पकडे हुए है ।

उसको ऊपर डोरी गई हुई है।

पेट्रोल पंप की मशीने दिखाई दे रही हैं।

दीवाले हैं दीवालो में लाल कलर और पीला कलर पोता गया है।

पीछे के साइड मैं एन्ड मैं खम्भे लगे हुए हैं और सीढिया बनी हुई हैं | सीढ़ियों मैं लाल कलर पोता गया है |

बहुत सारी गाड़िया दिखाई दे रही हैं | गाड़िया बाइक हैं |

ऊपर की साइड मे दो पंखे दिखाई दे रहे हैं आधी बंद हैं और लाइट भी लगी हुई है और एक सिंक लगा हुआ है जो सफ़ेद कलर का है ।

बिल्डिंग में पीला कलर और सफ़ेद कलर पोता गया है यहाँ पे नीले अक्षरों में भी कुछ लिखा गया है।